पर्यटक है यहां और इसके आस पास बहुत सारे पत्थर हैं।

और इसके ऊपर एक स्मार्ट टी_वी लगी हुई है।

जो कि यहां पे दो वर्कर साफ कर रहे हैं और एक टायर की साफ कर रहा है।

बकेट में कपड़े को डाल के निकाल निकाला--

और यहां पे कुछ डेमो के लिए अ डेमो के लिए एक स्टेचू रखी हुई है शूज को पहनाने के लिए।

और इस पे एक बैनर पे लिखा है फ्लोरेंस ।

और इसके बाहर दो स्टैचू रखे हुए हैं और यहां पे एक बहुत बड़े टेबल रखी है जिसपे एक इंसान बैठा हुआ है।

यहां पे कुछ छोटे - छोटे पौधे से पौधे लगे हुए है और कुछ घास --

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यह एक डॉग पाॅप्स है और यहां पर एक बहुत बड़ी बड़ी बैनर लगी हुई है।